यह बुलडोजर अभी किसी उस पर रखी हुई है।

और यह किसी जू का फोटो नजर आ रहा है इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

इनकी डिजाइनिंग अलग अलग प्रकार से है और एक सिंह रखी हुई--

और इसमें बहुत सारी सरिया नजर आ रहे हैं जिससे इमारत को डिजाइन किया गया है सीमेंट के इमारत है ये।

परफेक्ट की एक वैन है जो बहुत सारे कलर से पुती हुई है और एक मकान नजर आ रहा है।

एक ऑटो नजर आ रहा है बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं।

इसमें एक्टिवा की सर्विसिंग के लिए जो दुकान होती है वह नजर आ रही है जिसका नाम है मां पीतांबरा ऑटो ।

चार एक्टिवा नजर आ रही है जो दो सफेद कलर की हैं और एक लाल और एक सुरमई कलर की है।

और इसमें व्यक्ति के नीचे इंची टेप लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारे बच्चे एक इमारत के बाहर एक फिसलने वाली फिसली पे खेल रहे हैं।

कुछ पुरुष अंदर हैं और कुछ पुरुष बाहर हैं और कैंडल जल रही है।

इसमें होटल आकाश सिविल लाइन ललितपुर यू_पी का बोर्ड नजर आ रहा है।

कुर्सियां नजर आ रही है होटल ही नजर आ रहा है।

यह एक मार्केट का एरिया लग रहा है जहां पे बहोत सारी भीड़ है।

और सामने एक पुरुष दिखाई दे रहा है कांच के अंदर।

और जाल के अंदर एक इमारत बनी हुई है वो नजर आ रही है।

त्रिभुज के आकार में जूं के अंदर एक पाइप की लेयर बनी हुई है।

एक व्यक्ति है जो अपने सोफे पे कवर चढ़ाने से पहले उसको अडजस्ट कर रहा है।

इस पे बोहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए वो नजर आ रहे हैं। बोहोत सारी चेयर नजर आ रही हैं।